झूला तरामछी अभी तक यहाँ सब समान आते ही है।

जिसपर लोग आकर बैठते हैं।

जो ठरेसर में गेहूं के डंठल को डालकर --

अनेको कमल खिले हुए है जो कमल --

रंगाई पोताई की जा रही है।